श्री राम जी और शिवजी की--

इस छत में सारे समान बिखरे परे हुए हैं।

ईंटा जोड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति उधर --

फोटो पे हार लगा हुआ है।